उसने बनियान और चड्डा पहना हुआ है।

आदमी ने सफेद रंग की शर्ट --

इस चित्र में हमें दिखाई दे रही है एक--

हमें दिखाई दे रहा है एक रेलवे स्टेशन ।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है।

जहां पर पार्क में फुब्बारा लगा हुआ है।

हमें दिखाई दे रही है एक ऑफिस --

एक छतरी दिख रही है और पानी साफ है।

ये ट्रेन बच्चों को घुमाने के लिए होती है।

इस चित्र में हमें नजर आ रहे हैं कुछ लोग--

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है एक सेंटा क्लॉज --

यह चित्र एक मेडिकल स्टोर का है।

सामने हमें बहुत सारे घर नजर आ रहे हैं यहां हमें दो लकड़ी की नाव भी दिखाई दे रही हैं।

पीछे स्वागत के लिए एक मूर्ति खड़ी हुई है जिसके हाथ में फूल है।

जहां पर हमें दो कुर्सी नजर आ रही हैं।

इस चित्र में हमें नजर आ रहा है एक स्टेट बैंक का एटीएम --

बाहर लाल और सफेद रंग से पुताई की गई है।

जिसको फुग्गों से सजाया गया है।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

ऊपर सितारों से सजाया गया है।